यहां पे तीन बस खडे हुए है।

मशीन में कुछ इंसान खड़ा हुआ है।

ये कोई बड़ा सा जंगल है यहां पे--

एक गद्दी पका हुआ है और सामने से कुछ ब्लू कलर का मैट है।

और इसके सामने एक ब्लैक कलर का है।

और ये अंधेरा रात हुआ हैं और नीचे टाइल्स है।

पेड़ हैं छोटा बड़ा पेड़ हैं।

ऊपर कुछ मछली दिख रहा है।

इसके पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।